यहाँ पर कुछ बोर्डस लगे हुए दिखाई दे रहे हैं इन बोर्डस पर हिन्दी और अंग्रेजी के शब्दों में कुछ लिखा गया है।

यहाँ पर एक छोटा ट्रक दिखाई दे रहा है और यहाँ पर लाइट्स जगी हुई दिखाई दे रहीं हैं।